नीचे एक मैट बिछी हुई है जो कि ग्रीन कलर की मैट है।

कुरकुरे और मीट के पैकेट भी टंगे हुए हैं और सामने कुछ वायर भी टंगा हुआ है।

दोनों साइड से रोड गुजरा हुआ है कुछ लेडिस रोड पर चल रही हैं।

ऐसा लग रहा है कि ये मकान बिल्कुल शहर के बाहर स्थित है।

कुछ लेडिस भी खड़ी हैं एवं कुछ इंसान भी दिखाई दे रहे हैं जो की जेंट्स --

बीच में एक चक्र है और बीच में कलर व्हाइट है नीचे ग्रीन कलर है।

इमेज में एक क्लास रूम को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारी सीट्स पड़ी हुई हैं।

सामने दो बोर्ड लगे हुए हैं उनमें से एक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है।

इस इमेज में बहुत सारे बच्चे की ग्राउंड में कुंमफू कराटे सीख रहे हैं।

इस इमेज में जो दिखाया गया है वह एक होटल या रेस्टोरेंट है।

बैंगनी कलर का टॉप पहनी हुई है लड़की के हाथ में एक मोबाइल है।

साइड में कपड़ों के डब्बे रखे हुए हैं जो की वाइट कलर के दिख रहे हैं।

कैंट एंड एक्वागार्ड ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर को हिंदी में रेड कलर से लिखा गया है।

बाउंड्री में एक गेट लगाया गया है जो कि लोहे का स्काई ब्लू कलर का गेट है।

बजरंगबली का मंदिर है सामने बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है।